स्क्रीन पर कुछ क्रिकेट चल रही है।

ब्रह्मा कुंडी धार भी लिखा हुआ है।

यहां एक वेटिंग मशीन भी दिख रही है।

और कांच की खिड़कियां भी लगी हुई है।

और वहां कुछ लोग बैठे हुए हैं।

साइड में एक डस्टबिन भी पड़ा हुआ है।

पीछे एक पानी की टंकी रखी हुई है।